यह पिक्चर एक चर्च में खिंचा गया है जिस चर्च में एक पादरी --

उसका ऑक्सीजन लगा करके कुछ इस पर रिसर्च किया जा रहा है इधर जो है हरे रंग का परदा लगा हुआ है और --

बैंकिंग रेलवे टी.ए.टी. सी.टी.ई.टी. --

कई डब्बा रखा हुआ है कुरकुरे का पैकेट वहाँ पे रखा हुआ दिखाई दे रहा है।